यहां पे एक लोहा का पोल लगा हुआ है और उसने एक बल्ब भी है और यहां पे गम फुल है और बगइचा भी है।

और यहां पे एक लड़की भी बैठी हुई है जो कप ली हुई है और घड़ी भी पहनी हुई है।

उधर बहुत करकट का भी लगा हुआ है दीवाल भी बना हुआ है जो ब्लू कलर का पेंट किया गया है।

यह एक बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में वाइट कलर का पेंट भी किया गया है इधर में पार्क की तरह बना भी गया है।

बल्ब भी बहोत सारा लगा हुआ है और यह यहां पे एक ब एक आदमीन भी तरह बना हुआ है।

एक यहां पे ए_सी भी लगी हुई है और दो ठे खिड़की है इधर भी एक खिड़की है।

यहां पे इसमें पेट्रोल पंप का दुकान है और यहां पे केतनी सारी बाइक भी लगी हुई है ट्रक भी दिख रहे हैं और यहां पे मशीन भी दो ठे है।

एक बोर्ड भी टंगा हुआ है उसको पेंट किए गए हैं ऑरेंज कलर से पेंट भी है और यहां पे तीन चार आ--

अरे यहां पे पाइप भी है एक आदमीन भी दिख रहे हैं और यहां पे एक मोंगिया का टांगा भी गया है।

दिख रहे हैं और उधर लोहा के शायद बना हुआ है डिजाइन किया गया--

और यहां पे ए एक मशीन भी है और यहां पे एक बोड़ा भी दिख रही है और यहां पे एक बो बोर्ड भी है।

ब्लू और पीला कलर का टेंट भी लगा हुआ है और यहां पर चार पांच आदमी है जो है झंडा पड़े हुए हैं।

यहां पे एक घंटी भी रखी हुई है इधर में रखा हुआ लगाया गया है।

यहां पे एक सैलून दुकान की तरह है और यहां पे एक चेयर भी लगा हुआ है और यहां पे एक आदमीन है और वो जो बाल काट रहा है एक तौली ओढ़ाकर उसको एक चेयर भी लगा हुआ है।

और यहां पे एक पाइप भी बिछा हुआ है और यहां पे एक घर की तरह दिख रहे है और पर्दा भी लगा हुआ है घर में एक आदमी भी दिख रहे है।

और यहां पे करकट भी बहुत सारे हैं और यहां पे बहुत हरा हरा घास भी दिख रहे हैं और एक आदमीन भी हैं उधर।

एक कुर्सी भी है और टेबल भी एक है उधर में ब्लू कलर का प्लास्टिक भी एक दिख रहा है।